कुछ लड़कियां फोटो खींच रही है और चट्टानों से बना हुआ कुछ मंदिर टाइप कुछ है।

टाइल्स लगी है वहां पे और टॉर्च मतलब लाइट है वहां पे।

एक मिस्त्री है और वो लोग मतलब कुछ ऐसे बिछाए हुए है जिसपे वो लोग खड़े हैं।

और बॉक्स वगैरे है वहां पे लाइट जल रही है और साड़ी को टंगाए हुए हैं।